हमें यहाँ पर बोहोत बड़े -बड़े लड्डू भी रखे हुऐ यहाँ पर केक भी बना हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर भारी चॉकलेटों के डिब्बे भी दिखाई दे रहे है यहाँ पर मावा की बर्फी भी रखी हुई है बहुत बड़े- बड़े रसगुल्ले भी --

बहुत बड़ा ऑफिस दिखाई दे रहा हैऑफिस में बहुत सारी कमपुटर भी दिखाई दे रहे है यहाँ पे बहुत बड़ी कुर्सियां भी डली है ।

सामने दो स्कूटर भी खड़े हुए है जो बहुत अच्छे लग रहे है सामने नदी भी दिखाई दे रही है जिसमें बहुत सारा पानी भी भरा हुआ है यहाँ पर एक रोड भी निकला --